और इसके सीधे तरफ मोर सुपर स्टोर है।

और एक आदमी खड़ा हुआ टी_वी देख रहा है।

यह एक काली माता की मंदिर है।

यहां पर एक आदमी खड़ा है।

और एक आदमी वहां पर खड़ कर--

आगे से देख रहा है।

और आसपास सभी पेड़ पौधे हैं।

और एक कटोरी में रखी गई है।

और एक बड़ी सी सफेद प्लेट भी है।

और नीचे केले भी हैं।

स्कूल में ये पूरा खाली सा एक मैदान है।

और एक आदमी खड़ कर--

कुछ रिपेरी कर रहा है।

और इसका बोनट खुला है।

यहां सभी आसपास पेड़ पौधे हैं।

और एक गाड़ी भी है।

और एक ठेला भी है।

इधर एक आदमी भी चल रहा है।

अपसाइन भी रखा गया है।

यहां सभी लाल चेयर है।

जमीन पर ग्रानेड भी लगाया गया है।

और यहां पर एक आदमी बैठकर नमाज पढ़ रहा है।

और सामने एक लाइट जल रही है।

यहां सभी चीज़ें जुड़ी है।

काले चेयर रखें गए हैं।

जिसके बाजू में ही ई_वी चार्जिंग स्टेशन भी है।

और पीछे दो बक्से भी रखे गए हैं।

नीले रंग की भी रखी गई है।

यह एक बस स्टॉप है।

और एक लड़का इधर क्लासरूम की तरफ भाग रहा है।